शिमला मिर्च है ककड़ी है बैगन हैं |

और म इसमें खंभा लगा हुआ है बड़ा और बहोत बड़ा यह गैरेज है। ऊपर लाइट लगी हुई है एसी भी लगी हुई है।

लकड़ी का एक ढेर बनाया हुआ है यहाँ पर दीवार के जैसा और इस ढेर पर कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं |

घूमने के लिए जाते हैं |

जो ब नाव खड़ी हुई हैं यहाँ पर। मौसम नीला है बादल पूरी नीली है मौसम साफ है धूप नहीं है।

डैम का ओवरफ़्लो हुआ है इसलिए तेज धार में पानी आ रहा है |

और मशीन पर एक्सर्साइज़ कर रहा हैं यह व्यक्ति और भी लड़के यहाँ पर एक्सर्साइज़ कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी मशीन यहाँ पर रखे हुई है।

यह कपड़े की शॉप है और यहाँ अलग - अलग वराइटीज के बहोत सुंदर - सुंदर कपड़े बेचे जा रहे हैं जिसमें कुर्ती रखी हुई हैं।

यह बोहोत बड़ी सुंदर-सी बिल्डिंग है जिस रात्री के समय बोहोत ही --